और दो- चार लोग यहाँ से उतरे है अभी जस्ट - जस्ट अ बी बिलकुल दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ।

और ये अभी - अभी उद्घाटन हुआ गया है बलून सजाया गया है मस्त ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है स्कूटीयाँ यहाँ रही है स्कूटी ऊपर सीढ़ी दिख रहा है और कुर्सी भी रखा गया है बैठने के लिए --